यहां पे रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दे रही है।

यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां टाइल्स दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है।

यहां पिलर भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर टाइल्स दिखाई दे रहा है।

यहां पर टेबल दिखाई दे रही है।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

यहां बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है।

यहां गमला भी दिखाई दे रहा है यहां पिलर दिखाई दे रहा है।

यहां बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

एक यहां एक स्कूटी दिखाई दे रहा है।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

यहां एक हरा रंग का मैट बिछा हुआ है।

दीवार का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

यहां पर पानी टंकी दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बोतल दिखाई दे रहा है।

यहां स्कूल बस दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ पाइप दिखाई दे रही है।